यह एक ग्राउंड है जिसकी बाउंड्री चारों तरफ से हो रही है।

सरहाने पर दो फूल बने हुए हैं।

यहां पर लड्डू रखे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर ब्लू और रेड कलर की बॉल रखी हुई है।

शीशे के सामने एक लहंगा टंगा हुआ है कुछ लहंगे तकत पर पड़े हुए हैं और कुछ लहंगे शोकेस में रखें हुए हैं।

यह एक क्लास रूम हॉल है।

यहां पर एक नारी नृत्य कर रही है।

ग्राउंड के अंदर दो सीटें भी रखी हुई हैं।

और इसमें हरी छोटी छोटी घास भी खड़ी हुई है।